और ई यह विधालय बहुत ही बड़ा है।

अहू यहाँ नमाज पढ़ाया जाता है और देखिए कितने अच्छे से-- .

भगवान बहुत ही शक्तिशाली और अच्छे है और सामने एक पंखा भी है और गन भी--

परिसर परिषद है और--

हॉस्पिटल है और ये देखिये एम्बुलेंस खड़ी है। .

और बहुत ही अच्छा सुविधा है और साफ़-सुथरा भी है।